और यहां पर चारों साइड बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

और यहां पास बहोत ही अच्छे से पढ़ाई होती है।

यहां पर सामने कंस्ट्रक्शन चलते हुए दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मेरीगोल्ड रोज मोगरा और भी बहुत कुछ--